अब बड़ा सा गेट है जो दिखाई दे रहा है जो ब्लैक रंग का है व्हाईट व्हाईट दाग है उसमे बड़ा - बड़ा पत्ता है जो ऊपर मे पेड़ दिख रहा है जो ग्रीन है।

करके रखे हुए हैं दो बोरे है जो साइड में रखे गए हैं एंगल है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है कुछ औरते है जो --

जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ऊपर का छज्जा है जो--

जो वाइट कलर का दिख रहा है ऊपर का छज्जा है।

इस इमेज में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है बहोत सारे गोल-गोल खिड़कियां है जो बनी हुई है।

इस इमेज में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है बहोत सारी गोल गोल खिड़किया है जो बनी हुई है।

और बहोत सारे वर्कर जो नीचे खड़े है अ सब मास्क लगाए हुए है टोपी पहने हुए है।

इस इमेज में मुझे रोड दिख रहा है जो थोड़ा गड्डा है जो दिख रहा है जो काले रंग का दिख रहा है।

है तीन कुर्सियां जो दिख रही है इसमें कुछ झोला रखा हुआ है जो आसमानी रंग का है।

व्हाईट रंग का जल रहा है जो लंबा- लंबा कुछ रखा है जो व्हाईट कलर का दिख रहा हैं।

आप पीछे पर्दा लगाया गया है जो व्हाईट रंग का दिख रहा है आसमान है।

और बादल है जो पूरा सादा हुआ पड़ा है और थोड़ा सा रौशनी आ रही है जो आकाशी कलर का दिखाई दे रहा है।

तार है जो बहुत सारे दिख रहे हैं मैदान है जो बहुत बड़ा दिख रहा है जो छोटे - छोटे घास में दिख --

एक आदमी है उसका हेड है कुछ मसाज कर रहा है जो दिख रहा है।

और ऊपर में वो गाच है जो दिखाई दे रहा है जो परछाई में दि --

कवज यूनियन बैंक का है जो व्हाईट कलर में है।

चार बजे भोजन आवास दोपहर ढाई बजे से तीन बजे तक लिखा हुआ हैं।

ब्लू रेड पिंक कलर का दिख रहा है खिड़कियां है जो बहुत सारी दिखाई दे रही है।

जो जी डबल ओं जी एल ई लिखा हुआ है जो रंग-बिरंगे में लिखा हुआ है जैसे --

जो जी डबल ओ जी एल इ लिखा हुआ है जो रंग-बिरंगे में लिखे हुए है जैसे --

इस इमेज में मुझे बड़ा - बड़ा पत्थर है जो दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का दिख रहा है व काले रंग का दिखाई दे रहा --

पीछे एक गाज है जिसमे हरे कलर की लाइट आ रही है पत्ते दिख रहे है।

पीछे एक गाज है जिसमे हरे कलर की लाइट आ रही है पत्ते दिख रहे है।

पीछे गाज है जिस में हरे कलर की लाइट आ रही है पत्ते दिख रहे है।

नीचे में गमला है जो थोड़े मिट्टी कलर के दिख रहै है छोटे - छोटे पौधे है जो लगे हुए है।